यहाँ पे कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं रेड ब्लू कलर के यहाँ पे काफी दीवारें भी दिखाई दे रही हैं जिनका कलर वाइट है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है और गेट भी दिखाई दे रहें हैं जो की डिजाइनिंग हो रही है।

तालाब दिखाई दे रहा है जिसमे ए-क के पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यहां--

एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लकड़ियाँ गड़ी हुई है अभी पानी भी भरा हुआ है जिसमें कुछ धाने लगी हुई हैं। यहाँ पे जमीन भी दिखाई दे रही है और--

लाइटें भी दिखाई दे रही है यहाँ पे ए.सी. भी लगी है जो दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ कपड़े भी पड़े हुए है।